यह एक पेट्रोल पंप है इसके पास में बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिन पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

पेट्रोल पंप के पास में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह एक रूम है और इस रूम के अंदर एक कैरम बोर्ड है।

जिसके आसपास में कुछ आदमी खड़े हुए हैं और एक आदमी के हाथ में एक पाइप भी है।

और इस कैरमबोर्ड पे कुछ गेंद पड़ी हुई है और इसके अंदर एक सोफा भी है और एक लाइट भी लगी हुई है और एक कूलर भी रखा हुआ है।

और इसकी छत में कुछ पंखे भी लगे हुए हैं और कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट है और इसके अंदर बहोत सी टेबल रखी हुई है।

और एक लड़के के पास में कुछ ईंटा भी रखी हुई है।

और कुछ गेट भी लगे हुए हैं और खिड़कियों के पास में कुछ कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

और इसके आगे एक बिजली का खंभा भी खड़ा हुआ है और पास में दो पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है और इसके अंदर बहोत सी टेबल रखी हुई है।

यह जूते की दुकान है इसके अंदर बहुत से जूते रखे हुए हैं।

यह एक सड़क है और इस सड़क पर बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

और दुकान के बाहर कुछ झंडे भी लगे हुए हैं और दुकान के पास में कुछ झूले भी लगे हुए हैं।

यह एक बहुत ही बड़ा समुद्र है और इसके अंदर बहुत सा पानी भरा हुआ है।

और इस समुद्र के अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक फलों की दुकान है और इस दुकान के अंदर बहोत से फल रखे हुए हैं और इसके अंदर कुछ क्रेडो में पन्नी भी रखी हुई है और उसके पास में एक्टिवा भी खड़ी हुई है।

इसके बाहर एक कपड़े धोने की मशीन और कूलर रखे हुए हैं और उनके पास में दो बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं।

यह एक दुकान है और इस दुकान के अंदर एक काउंटर रखा हुआ है जिस पर कुछ बॉक्स और पैकेट रखे हुए हैं।

और इसके अंदर एक स्टील का भगौना और प्लेट रखी हुई है।

और इसके अंदर एक कांच का काउंटर भी है जिस पर बहुत से पेंसिल के बॉक्स रखे हुए हैं।

यह एक कार्यालय है और इसके बाहर एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

और एक गेट भी लगा हुआ है और कुछ घर भी बने हुए हैं।

यह एक ढाबा है और इसके अंदर बहुत सी टेबलो कुछ कुर्सियां रखी हुई है।

और ब्रिज के साइड में कुछ सीमेंट से बनी ग्रिल भी है और--

यह एक खेत है और इस खेत के अंदर बहोत सी बंद गोभी लगी हुई है।

और इसके अंदर कुछ बलब भी लगे हुए हैं और बाहरी स्टील का काउंटर भी है जिस पर कढ़ाई और कुछ बर्तन रखे हुए हैं।

और इसकी दुकान में पीछे कुछ कैरेट भी रखी हुई है जिनमें बहुत सी सब्जियां रखी हुई है।

और कुछ प्लास्टिक के डब्बे रखे हुए हैं जिनके अंदर कुछ बिस्कुट को बीड़ी के बन्डल है।